यह बिग बाजार के अंदर के सिनेपोलिस की तस्वीर है जो की एक सिनेमा घर है इसमें हर एक तरह की सिनेमा लगता है।

इस तस्वीर मे काफी आरे पेड़ पौधे और एक बिल्डिंग नजर आ रही है इस बगीचे के सुंदरता बहुत अच्छी है।